पीछे एक गेट भी हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा--

और यहाँ पर बाहर बहोत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और यहाँ पर बहोत सारे अंकल भी हमको दिखाई दे रहे हैं और एक गाड़ी की प्लेट भी हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है।

और ये ब्लैक और कुछ ब्लू कलर का भी है मुर्गा और इस खेत में बोहोत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।